दिया गया चित्र में एक मनी प्लांट दिखाई दे रही है जो कि गमलों के अंदर लगाई गई है।

जिसमें अंदर दो कार खड़ी हुई है कार का रंग काला है।

दिया गया चित्र एक रूम का है जिसमें शोकेस में बहुत सारे बुक्स लगाई गई है शोकेस का कलर सिल्वर है।

शोकेस के ऊपर कुछ चिप्स भी लगाई गई है।

साइड में एक फ्रिज भी रखा गया है। फ्रिज के ऊपर बी बोहोत सारी बॉटल्स रखी हैं। फ्रिज का कलर ग्रे है। साइड में गत्ते की पेटी भी र --

दिए गए चित्र एक बस स्टैंड का है यहां पर बहुत सारी बस खड़ी हुई है।

कुछ खाली जमीन भी है जिसमें खाली मट्टी पड़ी हुई है।

ज्यादातर युवकों ने लाल रंग के कपड़े भी पहने हुए हैं।

दिया गया चित्र एक गिफ्ट्स की दुकान का है।

होटल के अंदर एक ए_सी और एक एल_सी_डी भी लगाया गया है होटल में क्रीम कलर का कलर हो रहा है।

दिया गया चित्र एक रोड का है जिसमें कुछ वाहन दिखाई दे रहे हैं।

कुछ और भी महिलाएं दिखाई दे रही है तथा एक पुरुष भी दिखाई दे रहा है।

दीवार पर चॉकलेटी रंग का कलर हो रहा है।